केले शॉप है जो कि फल फ्रूट की शॉप है यह व्यक्ति खड़ा है जो कि फल खरीद रहा है।

और कुछ बोरियां भी पड़ी हैं पास में और यह भी सीढ़ियां सी कुछ नजर आ रही हैं इसमें थोड़ी बाहर जाते हुए।

और एक बाइक खड़ी है साइड में ब्लैक कलर की।

थंबा है इसके व्हाइट और ब्लू कलर का पेंट किया गया है पास मे ये सड़क सी नजर आ रही है रेलवे --

इस फोटो है ये कोई एक मकान है।

ये कोई डाक का ट्रैक है जिससे यहां पर्ची डाल सकते हैं डाक के लिए पास में यहां एक्टीवेटर है।

ये रेड कलर और ब्लैक कलर किया गया है।

इस फोटो में यह कोई एक--

और ऊपर ये आसमान का सा दृश्य है ये गाय बैठी हैं गाय रेड कलर की है।

ये नीले और व्हाइट कलर का पेंट किया गया है ये उधर साइड में एक फ्रिज पड़ी हुई हुई है और ये --

यह कोई एक टायरों की एजेंसी है इसमे ये टायर बड़े है एक --